पेड़-पोधा दिख रहा है बड़ा-बड़ा एक साँप जा रहा है क्या है जंगल का दिख रहा है मेरे को ये फोटो ।

डाक जीवन पटवारी डाक घर दिख रहा है जिसका ये गेट बना के रखा है इन्होंने अच्छा गेट है ये उमेश चंद --